बोहोत सारे पेड़ भी लगे। पेड़ों का कलर हरा है और ए नाव का कलर पीला है और इस लड़की के कपड़ो का कलर नीला है और इस नदी के पानी का कलर ओ सफेद है।

और नाव हैं और यहाँ की नदी का पानी हरा है और पेड़ लगो --

यहाँ मेरे सामने एक बस खड़ी हुई है | बड़ी सी रोड बनी हुई है| इस बस माला लगा हुआ है और बस में सीसां लगा हुआ है | यहाँ पास लोग भी है और--

गारे का कलर काला है और यहाँ पर घरें बनी हुए हैं और यहाँ पर बैनर लगे हुए हैं। बैनरों का कलर बोले तो लाल है सफेद है।

यहा पर पानी भरा यहाँ पर से रोड बनी है रोड में पानी भरा हुआ है और यहाँ पर से एक आंटी भी दिख रही है यहाँ रोड के बगल में दीवाल बनी है दीवालों का कलर सफेद है काला है।

और यह बड़ा सा कैरम रखा हुआ है। इसका कलर भी काला हैनीला हैलाल है और यहाँ इसके पीछे टॉवर रखा हुआ है। टॉवर का कलर अअअ सफ़ेद है और यहाँ पेड़ भी लगा हुआ है। पेड़ का कलर --